और आसमान नजर आ रहा है।

जहां पर बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां पर एक घना जंगल नजर आ रहा है।

बहोत सुंदर डेकोरेशन की हुई नजर आ रही है एक फोटो फ्रेम नज़र--

सामने एक सोफा नजर आ रहा है।

और बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही है।

मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं।

आ रहा है एक गाड़ी नजर--

जो कुछ एक्सपेरीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं और कोई फैक्ट्री नजर आ रही है।

जहां पर बहोत से लोग नजर आ रहे हैं।

रोड साइड व्यू नजर आ रहा है।

कुछ चेयर और टेबल दिखाई दे रहे हैं।

एक मिरर दिखाई दे रहा है।